नीले कलर का मोर है और हरे कलर का उसका पंख दिख रहा है। नीचे पत्थर है मिट्टियां दिख रही है नीचे।

और एक दीवाल दिख रही है जिसमें सर्व स्वच्छ सर्वेक्षण दो हज़ार बाईस लिखा हुआ है।

खंबे दिख रहे हैं बड़े-बड़े। नीचे घर दिख रहे हैं।

नीचे घांस दिख रही हैं। पेड़ लगे हैं। पेड़ की पत्तियाँ दिख रही हैं।